अं बंद पैक दवाईयां रखी गई है और कुछ बोतले रैक पे रखी हुई दिखाई दे रही है एक काउंटर बना हुआ--

बनी हुई हैं प्रतिमाएं बनी हुई हैं मंदिरों की छोटे छोटे।

और पहाड़ में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं।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

ये एक हॉस्पिटल के रूम का पिक है।

ये एक स्कूल या कॉलेज की दीवार दिखाई दे रही--

एक गुर शिक्षा की क्लास लगी हुई है यह सब ने पीले वस्त्र धारण किए हुए--

उसके पास एक कृशन जी की प्रतिमा लगी हुई है और पिक खींचा रहे--

रखी हुई है कुछ रेड कलर की है कुछ ग्रे कलर की है।

टावर की रेन्जर लगे हुए हैं।

और कुछ गोल रेन्जर लगे हुएं हैं और कुछ लॉन्ग ।

और एक मोटरसाइकल पे व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के आगे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए--

यहां बहोत सारी सब्जियां रखी हुई हैं।

और बहोत सारी सब्जी रखी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक शॉप का पिक है शॉप में छोटे छोटे--